इस फोटो में हमें कुछ फ्रांस की कलाकृतियां दिख रहीं हैं जैसे कुछ टोकरियाँ कुछ फूलदान वहीं कुछ लैम्प जैसे दिख रहे हैं वहीं हमें --